पंछी अपना पंख फैला कर नाचता है तो ऐसा लगता हैं मानो जैसे इतने ही हीरो झरे पोशाक पहन ली हो।

यहाँ पे एक बोरी रखी हुई रिकशा हैं जहाँ पे काफ़ी मजदुर लोग हैं।

प्रतिमा महामी शक्ति मुनि नाम से भी जानी जाती हैं।